इसमें लाइटिंग किया गया है राइस बॉल लगाया गया है

बगल में एक नदी निकला हुआ है।

यह एक बुद्ध भगवान का मूर्ति बनाया गया है जिसके बगल मे और दो मूर्तियाँ है।

बहुत सारे पंखे हैं रखे गए हैं।

साइड में एक और खिलाड़ी खड़े हैं बल्ला ले के ।

जिसमें से लिखा गया है प्रचार किया गया है इस दवाई दुकान का।

और ये घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है।

कोई घर कोई उधर घूम रहा है कोई कपड़ा देख रहा है।

सिंगल सोफा और उसके बगल में लाइट है उसके नीचे स्विच है।

ढाबा किचन का एक बहार में ठेला लगाया गया है।

बगल में होटल सागर लिखा गया है।

यह शादी का नजारा है।

के बगल में टेबल है टेबल --

उसके पीछे वाइट कलर का परदा लगाया गया है।

और उसमें से लिफ्ट नीचे और ऊपर जा रहे हैं आ रहे हैं और दृश्य दिखाया गया है।

नीचे अ अम्म ग्राउंड में दो आदमी हैं एक आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी खड़े हैं।

इस पर्वत के अगल बगल बहुत ही वृक्ष है जो कि अच्छे दिख रहे हैं।

और दुकान के सामने ही बहोत सारे मुर्गे रखे हुए है और दुकान के सामने एक साइकिल खड़ा है।